दो आदमी खड़े हैं और रेड कुर्सी लगी--

इस वीडियो में फूल मंडी है।

इस वीडियो में एक हॉल है।

एक हॉल है जहां पे--

खूबसूरत सजी हुई है।

इस वीडियो में एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग --

उस पे के एफ सी --

एक मार्केट है जहां पे बहुत सारी--

और एक छत पे बुलु कलर की प्लास्टिक रखी --

जिस पे दो पेट लगी हुई है।

इस वीडियो में एक--

होल बहुत अच्छी--

रेड कलर की पर्दे लगे हुए हैं।

एक हॉल है हॉल में --

चार कुर्सी पर टेबल --

जो वाइट कलर का--

की घर है तीन मंजिल--

और उसके नीचे मार्केट बनी हुई है।

उसके पीछे एक वाइट कलर है।

इस वीडियो में एक कॉफी कोट --

लाइट लगी हुई है।

और उसके बगल में एक पेर है।

इस वीडियो में बहुत सारे भगवान की--

अखंड जोत जल रही है।

तीन मंजिल की घर है रुबन मेमोरियल ।

उसके नीचे चार पांच फोर व्हीलर --

लगे हुए हैं।

इस वीडियो में बहुत आदमी खड़े हैं।

वीडियो में एक हॉल है इसमें लड़का लड़की--

जो पीछे है वो नाव चालक है।

वी हैव

वीडियो में एक क्लास है।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

ये पेंट किए हुए हैं और बल--

इस वीडियो में एक बड़ा--

तालाब है नाव पर --

वहां पे बहुत सारे--

एक टीचर ब्लैक बोर्ड में--

पढ़ा रहे हैं।

जो हरा भरा है।

ट्रक लगी हुई है।

इस वीडियो में एक पार्क है।